और यहां पे ढेर सारे दरवाजे दिख रहे हैं।

और अलग अलग जगह पे रखे गए हैं ढेर सारे सामान पैकेट्स के हैं।

और कुछ बोरी के ऊपर रखे हैं अनाज।

इस चित्र में एक सैलून की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पे एक छोटा बच्चा है।

इसमें लिखे हुए हैं सोलर झटका मशीन ।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

ये दरवाजे बंद है और इसके बाहर एक तिरंगा लगा हुआ है।

इसमें से कुछ फीमेल है और कुछ मेल है।

इस चित्र में एक पार्लर दिख पार्लर की दुकान दिखाई दे रही है।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

और इन सब के फ्लावर्स भी हैं इसमें कुछ और कुछ ऐसे ही हैं।